ऊपर कई सारे एल_इ_डी लाइट्स लगा रखे हैं।

पेड़ पौधे भी उगा रखे है।

पीछे में कई सारे बिल्डिंग हैं।

यह तस्वीर एक कन्वीनियंस स्टोर का है।

पीछे में कई सारे पेड़ देख रहे है।

ये तस्वीर एक ब्यूटी पार्लर का है।

सफेद रंग का एक फैन दिख रहा है।

यह तस्वीर एक रेस्टोरेंट का है।

इस तस्वीर मे एक दुकान और एक वाइन शॉप को देखा जा सकता है।

बंबू का बना हुआ चेयर भी है।

जिसमें कई सारे फूल के बुके लगा रखे है।

जीनमें से तीन औरत है और बाकी बच्चे हैं।

एक आदमी ट्राली पकड़े हुए जा रहा है।

ये सारे अन्य प्रकार के कपड़ो को बेचा जा रहा है।

कई सारे पौधे और पेड़ उगा रखे हैं।

सफेद और लाल रंग के कुछ झंडा लहरा रहे हैं।